और एक कांच की दुकान भी नजर आ रही--

और दुकान की फू आगे शटर कांच का बना हुआ है।

यहां पे मुझे ये ऊपर की तरफ एक हॉस्टल भी दिखाई दे रही है।

यहां पे मुझे ऊपर की तरफ एक एल_ई_डी टी_वी दिखाई दे रहा है और सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।